श्वामी विवेकानंद की मूर्तियाँ ए और पानी की है।

दिखाई गई चित मे किसी रेलवे गुमटी की है जहां पे ट्रेन अपने मंजिल की और जा रहा है।

और यहाँ ट्रेन की पटरी भी काफी है और ये यहाँ पे आसमान भी अच्छी है ब्लू कलर की ट्रेन है जो अपनी मंजिल की ओर--

दिखाई गई चित मे किसी मेले की लग रही है जहां पे झुलूवा लगा हुआ है और यह पे बच्चो के खेलने के लिए काफी अच्छा और इसके आस पास का माहोल काफी शांत है और जंगल भी है और यहाँ का वातावरण काफी शुद्धअ लग रहा है ।